एक पुल था यार जब में वहा गया दिल्ली और इतना बड़ा पुल था लोहे का बढ़िया सा और उसके बराबर में एक टावर सा खड़ा था और मौसम इतना हो गया था मन कर रहा था कि इस पुल पर चले जाऊं कितना अच्छा --

भाई हम तो वहां गए थे कोलकाता और कोलकाता में इतना मतलब की एक नदी है उसके बराबर में तालाब है और इतना बड़ा सा था वो इतनी बड़ी नदी है की मेरा तो देख के मन खुश हो गया वहाँ पे फोटो कितनी बढिया आये थे हमारे।

तुझे पता है भाई जो कार का जो गैरेज खुला हुआ है अभी जो खुला है वह कितना बड़िया गैरेज है उसमें भाई साहब कार के मिस्त्री भी इतने टॉक के हैं बहुत बढ़िया हां कार वार ठीक करवानी हो तो वहीं करवाइए तू भी यार उसी गैरेज में ठीक है।

इसके साइड में इतना बढियां वो था। हमारे में जब मामा के खेत में जावें हैं ना तो ये यार रोड पे से इतना बढियां नजारा दिखता है भाई साहब वहां का तुझे क्या बताऊँ खेत भी इतने प्यारे दिखते हैं और वो खेतों में जब घुसते है ना फोटो वोटो इतना बढियां आता है खेतों का --

भुआ का गए तो देखा मैंने एक तलावसा बना हुआ और उस तलाव में चौबीस घंटे पानी भरा रहे दो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है एक में मछली है मैं एक में ऐसी कीड़े बीड़े पता नहीं क्या है एक में मछली पाले हैं वो वहीं के गांव में।

और वहाँ इतनी पुरानी पुरानी वस्तुएं रखी हैं चाकू मिट्टी के बर्तन तलवारें और भी बहुत पुरानी पुरानी चीजें सरदार मतलब कि महाराजाओं की चीजें तलवार चाकू वाकू --